यहाँ हम देख पा रहे है की बड़ी--

रही है और बहुत ही पेड़-पौधे पेड़-पौधे और साइड में कुछ--

ये लग रहा है स्टेडियम है मेरी प्रैक्टिस खिलाडी सबकर रहे है और साइड में एक कीपिंग है बल्लेबाजी कर रहे है और --

एक आदमी और एक भी खड़ी है ।